और यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ लगा रखे है स्टाइलिश वाले और खाली एरिया है वहाँ पर पार्किंग बना रखी है।